बगल मे भी बहोत सारा बड़ा स्कूल बना हुआ वहां भी बच्चे पढ़ाई कर रहे--

ये बहोत ही अच्छी जगह है यहां मेडिकल की ये दुकान है ब्रेन की दुकान है सब चीज की यहां दुकानें लगी गई है।

धूप भी है आ पेड़ पौधे हमको बहोत छाए भी दे रहे हैं ऑक्सीजन भी हमको इनसे बहोत ही मिलता है।

यहां बहोत बड़ी ही बिंन बिल्डिंन है यहां एक लेडी --

बहोत ही अच्छा लग रहा है वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इज --

सीमेंट मिलती है यहां बहुत ही बड़ा का गोडाउन --

मछली पकड़ रहे आ गए मम्मी आपका बहोत अच्छा लग रहा है। यहां नाव लो--

व्हाइट व्हाइट है। यहां गेहूं एहू भी डला हुआ--

ब्रेंच यहां बहुत ही कंफर्टेबल है।

यहां बहोत ही बड़ा रेनवे ट्रैक है। बहोत ही बड़ा रोड है।

बहोत ही अच्छा सब लोग यहां किराए से रहते की कोई दिक्कत नहीं सब लोग के लिए अच्छा--

है सब कुछ यहां सब कुछ बहोत ही अच्छा है कोई भी दिक्कत यहां नही है।

की अच्छा लग रहा है अ बहोत ही कुछ अच्छा है यहां सब कुछ बहोत ही वेरी ब्यूटीफुल है।

हरी भरी घासे हैं यहां बहोत ही अच्छा लग रह आ बहोत ही वेरी ब्यूटीफुल है सब कुछ --

ब्लेड बोर्ड भी है सब कुछ है यहां पे आधे से बच्चे सो रहे हैं यहां पे--

यह बहोत ही बड़ा ये गार्डेन है सब कुछ सब कुछ अच्छा ल--

बाइक भी खड़ी है यहाँ बहोत ही बड़ा मैदान है लगता है खेल कूद भी यहाँ होता है बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पेड़-पौधे भी लगे हुए है।